मुझे यहाँ पर कुर्सियां भी दिखाई दी रही हैं मुझे यहाँ पर पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

और मुझे यहाँ पर खुला आसमान दिखाई दे रहा हैं और मुझे यहाँ पर पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।